ये चित्र किसी घर की शुरुआत बनावटी के चित्र जैसा प्रतीत हो रहा है।

बीच वाली औरत दुर्गा मां का आशीर्वाद ले रही है।

मूर्तियों के पीछे एक नीला रंग का आदमी दिखाई दे रहा है।

ये चित्र में हम किसी के लिविंग रूम का दृश्य देख पा रहे हैं।

में हम किसी बस स्टैंड का दृश्य देख पा रहे हैं।

साइड का वॉल सफेद रंग का है और बीच में ही भीड़ लगा हुआ है।

ये दृश्य किसी दीपावली के दृश्य जैसा प्रतीत हो रहा है।

दीवार में अलग अलग तरह के फोटो लगे हुए हैं।

होटल के बाहर ही एक बड़ा सा पेड़ है जहां एक आदमी लाल रंग का टीशर्ट पहने बैठा हुआ है।

इस कक्षा के दीवारों का रंग सफेद है और दीवारों के बीचों बीच एक बोर्ड लगा हुआ है।

लेफ्ट साइड में एक बेसिंग है।

एक आदमी लाल और सफेद रंग का कपड़ा पहना हुआ है तो दूसरा आदमी पीला और काला रंग का टी_शर्ट पहन के बैठा हुआ है।

इस चित्र में पीले रंग का एक मकान है और मकान के पिलर लाल रंग के है।

यहां अलग अलग समान के अलग अलग रेट लिखे गए हैं ।

यहां अलग अलग तरह के जेवरात दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में हमें एक हाथी का स्तंभ और एक लड़का दिखाई दे रहा है।

बैंक के बाहर ही एक ए_टी_एम है ।

ए_टी_एम के साइड का वाल सफेद रंग का है।

स्टेशन में एक सीढ़ी है।

घर के बाएं तरफ बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा है।

ये किताब घर का नाम नोबिलिटी किताब घर है जहां पच्चास प्रतिशत कम दाम में नए या पुराने दोनों तरह के किताब मिलते हैं।